यहां यह झरना व्हाइट कलर का है।

चाही समोसे की दुकान का है।

किसी ने यहाँ पर फोटो खींचा है।

यहां पर बहुत सारी गाड़ियां आती है।

यह फोटो एक गोडाउन का है।

यह फोटो बहोत सुंदर दिखाई दे रहा हैं।

यहां पर एक लड़का योगा कर रहा है।

यह फोटो एक शादी के एवेन्यू का है।

यह झरना बहोत सुंदर लग रहा है।

यह फोटो बहोत सुन्दर दिखाई दे रहा है।

यह फोटो एक जिम का दिखाई दे रहा है।

यह फोटो बहोत सुंदर दिखाई दे रहा है।

यह फोटो एक बहोत सुंदर प्रकृति का दिखाइ दे रहा है।